बहोत सारा जंगल एरिया है सुनसान एरिया दिख रहा है हरा भरा भी है।

टैलेंट विजन सक्सेस का एक वो होने वाला है उसके लिए यह सजाया गया है।

नाश्ता करने के लिए उतरे हुए हैं ठेला है ऑटो रिक्शा जा रहा है मोटरसाइकिल खड़ी है।

यह एलोवेरा जेल वगैरह यहां--

इस प्रकार के बहुत सारे प्रकार के ऑयल वगैरह की शॉप है।

दाना दिया जाता है और उनके अंडे को सेल किया जाता है।

अनार के डब्बे डब्बे में रखे हैं ग्रैप्स हैं जिसके ब्लैक कलर के।

यह मारुति सुजुकी की कार की शोरूम है।

डेकोरेशन हो रखे हैं साइड में भी बहुत सारे डेकोरेशंस हैं।

मंदिर है ये दोनों साइड ओम लिखा हुआ है रेड कलर का दरवाजा है।

यहां किसी के शादी ब्याह का पार्टी हो रहा है।

चाय टी कॉफी जूस वगैरह का और कुर्सियां हैं।

ये एक रोड है इस रोड में बहोत सारे झाड़ वगेरा लगे हुए है घर भी है।

यह घर है टाइल्स पहाड़ में लगे हुए हैं खपड़ा है।

महाराजा ग्रेट है रेड कलर का।

और सामने में बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है।

उसके ऊपर कुछ चादर का दिख रहा है।

वहां जेंट्स वियर स्पोर्ट्स वियर शॉप है।

और ब्लैक कलर के मार्बल्स खूब सारे लंबे लंबे लंबे लंबे रखे हुए हैं।

यह एक मॉल है और एक मॉल में एक कंपनी का कपड़े का शोरूम है।

उस कपड़े बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं जेंट्स वियर लेडीज़ वियर ।

यह एक मॉल का प्लेग्राउंड है एक बच्चा फुट वॉलीबॉल खेल रहा है।

और एक बच्चा बॉल फेंकने की कोशिश कर रहा है वहां लगा हुआ है उसको गिराना है।

यह एक स्कूल है स्कूल का ग्राउंड है।

और बहुत सारे कुर्ती वगैरह भी रखे हुए हैं लेडीज़ वियर --

यह स्विमिंग पूल है इसमें दो-तीन प्रकार की स्विमिंग पूल है।

कांच की दरवाजे हैं एंट्री बहुत अच्छी है।

अब सारे कार करें लोग उतर रहे हैं और पार्टी में जा रहे हैं।

और सब बहोत भीड़ भड़क्का है।

एक रेस्टोरेंट है उसमें टेबल के ऊपर दो गिलास और एक प्लेट नाश्ता रखा हुआ है।

कुछ हो रहा है जिसमें बहुत भीड़ लगी हुई हैं।

एक दूसरे से बंधी हुई हैं और साइड साइड में बहुत हरियाली हैं हरे भरे गोभी फूल की तरह खिलखिलाकर हरिबरिया हैं।

खेत में गेहूं उगाए गए हैं गेहूं की खेती हो रखी है।

हरियाली हरे भरे खेतों में हर हरा भरा हो रखा है।

बहोत सारे डेकोरेशन पेड़ भी है।